मेला में काफी बार भीड़-भाड़ और रंग बिरंगी लाइटें लगी होती है। और ये झूला है जो की इसे भी झूलने आते है लोग झूलते हैं और झूलना भी कभी-कभी चाहिए हालांकि ये कभी-कभी खतरनाक होता है।

जो की यहां पे जो है दूध से सम्बंधित जो भी सामान आते है वो सारे यहा पे मिलता है। और लोग जो हैं खरीदते भी है और ये सभी चीज़े जो हैं वो है हर घर में युज की जाने वाली प्रोडक्ट हो --

ये कोई फोर्स का एरिया का जो ये लग रहा है।